हर साल पच्चीस दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है।

और दिल के किनारे को छूकर वापस आ जाते हैं सुबह शाम समुन्द्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है।

ते बच्चे बहुत चाव से खाते हैं।

और छोटी सी विट्स वाली लाइट का भी इस्तेमाल किया जा --

और उन बड़ी-बड़ी लिसक पट्टियों पर तो बड़े लोग भी झूल लेते हैं।

बत्तक अंटार्कटिका का छोड़कर लगभग पूरी दुनिया में पाई जाती है।

यह एक शादी वाला घर है।

और इसे सेलेब्रिटी भी पहनते हैं।

यहाँ पर कई यात्री उतरते-चढ़ते हैं।

वजन कम किया जाता है।

कब दुर्घटना से बचना है ऐसी-ऐसी रणनीति अपनाई जाती है।

और यहाँ जायकों के बिच हिंग की कचौरी का स्वाद तो बेहद ही लजीज है।

यहाँ व्यक्ति अपने अनुसार पौधा रोपण करते हैं।

अपने लुक को बदलने का सबसे आसान तरीका है।

यह एक पेट्रोल पंप है।

लोगो की सुंदरता बढ़ाने के लिए बालों की एक एहम भूमिका है।

ये इमेज ही एक हिन्दू मंदिर की है।

ता है जिसके लिए एक व्यक्ति उसको गाइड करता है।